और पाड़ी धो रहे टावर भी लगा हुआ है।

और तला विर गेट भी लग रहा है | ताला भी लग रहा है | एटीएम है इश में से पासे निकाले जाते हैं।

हरे हरे पेड़ खड़े हुए हैं और साइड में टीन सेट गिरा हुआ है।